एक कृष्ण भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है जिस मंदिर में मुरली कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान ने मुकुट पहन रखा है मुरली बजा रहे हैं गेंदे की माला पहन रहे है।

मालाएं लगी हुई है ऊपर एक मंदिर बन रहा है कोई काउंटर --

मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में वाइट कलर पोता हुआ है रेड कलर पोता हुआ है एक दुसरे मंदिर में भी रेड कलर पोता हुआ है मरकली लगी हुई है।

एक देवाल दिखाई दे रही है मट मैले टाइप की भवन मका मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रही जेंट्स लोग दिखाई दे रहा हैं गाड़ी खड़ी हुई है रोड गया हुआ है।

बादल दिखाई दे रहे हैं रंग-बिरंगे एतना चीज दिखाई दे रहे नदी में पानी भरा हुआ है ग्रीन कलर के पेड़-पौधे --

एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर मम्मी मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे एक जेंट्स दिखाई दे रहा है साइकिल चला के साइकिल चला रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है ग्रीन कलर --

एक भवन दिखाई दे रहा है जिस भवन के अंदर मैया जी का मंदिर --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहा हैं एक बस खड़ी हुई है बीच में एक जेंट्स खड़ा हुआ है बैग लेकर स्वेडर पहना हुआ है एक उधर खड़ा हुआ पानी की टंकी दिखाई दे रही कलर --

आसमानी कलर पुता हुआ है झांझरिया लगे हुए है डिजाइन में एक बैनर बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज वाला की नीचे कुछ कॉलेज है।